और कुछ प्लास्टिक के डब्बे भी रखें हैं।

और कुछ बाइक खड़ी हैं और एक आदमी जो बाइक के साथ खड़ा है और कुछ गमले भी रखे हैं।

यह मैदान है इस मैदान के पास में एक हाईवे है जो कि पुल है।

यह एक प्राइवेट बस स्टैंड है।

प्राइवेट बस स्टैंड पे बहुत सी बस खड़ी है।

वो आदमी रिसेप्शन वाली मैडम से कुछ बात कर रहा है।

और एक ऐसा फैन लगा रखा है जो हवा दे।

और लाइटिंग की गई है और कुछ आदमी है।

ये खूबसूरत नज़ारा समुद्र का है।

जो एक टेबल है उस टेबल के ऊपर अच्छे से फूल की सजावट हो रखी है।